सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है काच की बिल्डिंग है। जिसमे नीले कलर के काच लगे हुए है और तम्बू गाड़े हुए है बहुत बड़े बड़े तम्बू है साइड से लेव लेवार लाइनिंग गई हुई है तार के नीचे बहुत सारा कचरा फेला हुआ है।

एक मगर डला हुआ है मोटासा है साइड से फकी हुई दीवार है नीचे हलकी हलकी घास है।

और जलेबिया है जो कि एक कुछ गोल है कुछ से कुछ टेढ़ी है कुछ टूटी हुई है पीले कलर कि जलेबी है पीछे कुछ दीवार है जो ब्लैक ब्लैक दिख रही और आगे कुछ --

कुछ जंगल है घना सा जंगल है उसपे आगे लकड़ी है बम्बू छपे हुए है ओर एक मोर है जो ग्रीन कलर की है ओर स्काइ अ- डार्क ब्लू कलर की है।